ये एक ट्रक है और इसके आगे एक छोटी सी क्रेन है और यहां पे--

ये एक जगह है और यहां पे बहुत सारी कुर्सी लगी हुई है और एक पेटिंग भी बनी है जो बहुत सुंदर है।

और यहाँ पे एक बाइक है वो बहोत ही ख़राब है।

टेबल्स लगे हुए हैं उसमें टीसु पेपर और मैनु कार्ड रखे हुए हैं और यहां पर जो कुर्सी है वह ब्लैक एंड व्हाइट कलर की है।

यहां पे बहोत सारी लड़कियां है जो डांस कर रही है यहां पे अलग अलग तरह के--

ब्लू कलर के शर्ट पहने हुए है उनके पीछे बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है रेड लाल सफेद फूल से और यहां पे एक सीढ़ी भी है छोटी सी बनी हुई।

बस में तीन चार लड़कियां बैठी हुई हैं।

और यहां आस पास बहोत सारे जंगल से भरे हुए पेड़ पौधे हैं।

और यहां पे पर्दे भी लगे हुए है जो सफेद और लाल रंग के है।

और यहां एक पेड़ भी लगा हुआ है पीछे में जो हरे रंग का है।

यहा पे रेड कलर का कारपेट भी बिछाया हुआ है।

यह ये एक रेस्टोरेंट है और यहां पे बहोत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ।

ये एक जगह है और यहां पे बहोत सारी स्कूटीयां --

यहां पे एक ए_सी भी लगी हुई है औ पंखे भी लगे हुए हैं यहां पे लाइट्स लगे हुए हैं जो सफेद रंग के हैं।

अच्छे लग रहे हैं और यहां पे पिंक फूल भी लगे हुए हैं।

खिड़की बने हुए हैं उसमें यहां पे एक लाइट भी जल रहा है जो सफेद रंग का है।

यह एक जगह है और यहां पे एक बैंक लिखा हुआ है यहां पे बहोत सारे आदमी है।